और यहां पर सिलेंडर भी रखे हुए है और उसके बराबर में ईंटे भी रखी हुई है एक गाड़ी में सामान आया हुआ है।

और वहां पर पीछे की तरफ कई पेड़ भी लगे हुए हैं और उसके पीछे एक टैंक भी पानी का लगा हुआ है।

यह एक रिक्शा का शोरूम है इस शोरूम में बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

और एक पंखा भी लगा हुआ है इस क यहां पर एक शीशे का कमरा भी बना हुआ है वहां पर दो आदमी खड़े हुए हैं।

बाहर की तरफ एक कुर्सी भी रखी हुई है और एक रिक्शा वहाँ पर खड़ी हुई है।

यह एक बहुत सुंदर बैंकट हॉल है इस बैंकट हॉल में बहुत सी लाइटें भी लगी हुई हैं।

यह एक मंदिर है मंदिर के बाहर बहोत सी जनता खड़ी हुई है।

और इसके बाहर एक छोटा सा गमला भी रखा हुआ है गमले में हरे रंग का पौधा भी लगा हुआ है।

बराबर साइड में एक व्हाइट कलर का स्विच है और उसके ऊपर एक लाइट भी लगी हुई है।

और उसके बरोनो साइड लकड़ी का सामान रखा हुआ है जिसके सहारे से एक आदमी खड़ा हुआ है उसके पैरों के ऊपर।

यह एक खेल का मैदान है यहां पर चार लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं।

जिसमें आलू बहुत सारे रखे हुए हैं।

उसके पीछे दो पानी की टंकी भी लगी हुई है यहां पर बहुत सी हरियाली छाई हुई है।

काउंटर पे बलफ भी रखे हुए हैं और साथ में बोर्ड भी रखे हुए हैं।

इसके बराबर में एक छोटी सी नाली भी जा रही है जिसके ऊपर इधर आर पार जाने का रास्ता बना--

और जो आगे सभी खड़े होते आदमी खड़े हुए हैं ये सब उनके साथ जा रहे हैं।

यह एक हॉस्पिटल है यहां पर कई लाइटें भी लगी हुई है और कई पंखे भी लगे हुए हैं।

यह एक शोरूम है इस शोरूम में बहोत अच्छी लाइटें भी लगी हुई है और इसमें कुर्सियां भी रखी हुई है।

यह एक दुकान है इसके ऊपर लोहे की खिड़कियां भी बनी हुई है।

उसके ऊपर दो कटोरे रखे हुए हैं और बराबर साइड में भटूरा भी रखा हुआ है और वहीं पर एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस में एक मेज है कांच वाली साथ में तीन कुर्सिया भी हैं।

यह एक दुकान है इस दुकान में एक काउंटर भी लगा हुआ है काउंटर के पीछे की साइड में एक कुर्सी भी रखी हुई है।

यह एक स्कूल है इसी स्कूल में बच्चे चार्ट पेपर से कुछ बना रहे हैं।

और बच्चे लोहे की बेचों के ऊपर बैठ कर उसके आगे दूसरी बेंच पर सरक कर सामान कुछ बना रहे हैं।

और उसके आगे कई सारी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है इस दुकान पर बहुत सी भीड़ लगी हुई है।

यह साइकिल की दुकान है इस दुकान पर कई लड़के साइकिल खरीदने के लिए आए हुए--

यह एक दुकान है इस दुकान पर औरतों के सूट बहोत सारे रखे हुए हैं।

और बीच में इनके कुत्ता बैठा हुआ है बराबर साइड में तीन मोटरसाइकिल है।